कह सकते है कि स्टेशनरी शॉप --

के पीछे एक आइलेन्ड़ टाइप का दिख रहा है।

बारिश हो रखी है और पानी भर हुआ है। कई --

ये और नीचे फ्लोर में टाइल्स और एक टेबल भी दिख रही है।

और यहाँ पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैंएक्सरसाइज करने की जैसे के डम्बल --